फेसिअल किट के डब्बे दिख रहे हैं।

और एक और पेड़ दिखाई दे रहा है साइड में हरा- हरा --

और कुछ -कुछ खा रहे है अलग -अलग --

और ये सोनी और एलजी लिखा हुआ है आगे बोर्ड पे।

एक आदमी उसको देखता हुआ दिख रहा है।

आधा कटा हुआ सा मुरझाया हुआ सा अंदर से --

और उसके आगे कई सारी बाइकें वाईके खड़ी हुई --